यहाँ पर हमें एक कार्यालय जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक बनी हुई बाउंड्रीस का --

इन सीढ़ियों पर हमें लगी हुई रेलिंग्स दिखाई दे रहै है और यह पर एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है और कुछ चेयर --

जिसमें हमें एक छेद वाली रोशनदान खिड़कियां जैसी दिखाई दे रही है जिसमें से रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है।

चेयर्स दिखाई दे रही है और कुछ हेवी चेयर्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पर हमे काफी सारी जलती हुई लाइट दिखाई दे रही है और कुछ सुखी मिट्टियाँ और घास --

ड्यूटी करता हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने --

यह पर हमें एक हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें कुछ लकड़ी के लगे हुए अ --

पीछे हमें कुछ और मूर्तिस रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ --

लोहे के जाल खड़े हुए दिखाई दे रहे है और कुछ बिछे देखे दे रहे है यहाँ पर हमें कुछ जुड़े हुए इट्स दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें कार्यालय जैसा दिखाई दे रहा है कार्यालय का लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ बाहर दिखाई दे रहा है और --

एक सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ पानी पड़ा हुआ है और काफी सारे गिट्टियां पड़ी हुई है कुछ मिट्टी पड़े हुए है।

दिखाई दे रही है और दूरी पर हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहै है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग कुछ पर्पल का कलर हैं।

सोफा दिखाई दे रहै है और कुछ चेयर दिखाई दे रहै है इन सोफा पर कुछ रेड कलर का कपड़ा--

और मामेडियन्स के झंडे दिखाई दे रहे रहे है और यहाँ पर हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है बाहर हमें कुछ पड़े हुए --

इन दरियो में हमें काफी सारे लोग कुछ बैठे हुए और कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहै है और यहाँ पर हमें --

यहाँ पर हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें बनी हुई बाउंड्रीस दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें काफी सारे पेड़ --

यहाँ पर हमें एक बेकरी जैसी दिखाई दे रही है जहाँ पर हमें रखा हुआ नीचे एक बड़ा सा --